दीवार में पंखा भी लगा हुआ है और सामने में टायर भी रखा हुआ है।

सामने में एक आदमी भी बैठा हुआ है।

हमको ये तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

सामने में बिल्डिंग भी बना हुआ है और पीछे में दो बस भी खरा है।

सड़क पर गाड़ियां और बाइक चलता हुआ नजर आ रहा है।

सामने मे बहोत सारे फूल भी रखा हुआ है।

उपर में ट्यूबलाइट और पंखा भी लगा हुआ है और दीवार में एक बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ है।

ऊपर में येलो कलर का टोपी पहना हुआ है।

उपर में बहुत सारी इलेक्ट्रिक वायर्स भी टंगा हुआ है।

आसपास में बहोत सारा लोग भी दिखाई दे रहे हैं और आसपास कई सारा पेड़ पौधा भी उगा हुआ है।

ऊपर में कुछ रस्सी जैसे टंगा हुआ भी दिख रहा है।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

सामने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा है और ऊपर में बहुत सारा फ्लावर पॉट्स टंगा हुआ है।

नदी का किनारे में बहोत सारा पत्थर लोग भी दिखाई दे रहा है।

हमको यह तस्वीर में एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

दीवार में पोस्टर भी लगा हुआ है।

हमको ये तस्वीर में बहुत सारा बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा पेड़ पौधा भी उगा हुआ है।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

सामने में दो गाड़ी भी खड़ा है और नीचे में बहुत सारा पत्थर भी बिखरा पड़ा हुआ है।